जो मंदिल जैसा डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने में एक लम्बा सा दिखाई दे रहा बहोत लम्बा आसमान छू गया है ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ --

यहाँ सामने में यहाँ एक मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है।

बाजु मेडिकल स्टोर नीचे मे भी लिखा हुआ है।

पीछे में कुछ अजीब-सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और ये --

जो खड़े हैं यहां पे जेंस लोग हैं और हरे कलर का बैग लिए हुए हैं और --